इसके पास में कुछ जालियां बनी विंडो दिख रही है। कुछ बच्चे अपने दीवार के पास बैठे हुए दिख रहे हैं। बच्चे लाइन से बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं। छत का रंग हरा और लाल दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर हमें किसी की का कार्यलय दिख रहा है कार्यालय का बोर्ड नीला कलर सा पास में सफ़ेद कलर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ओर पास का गेट काँच का बना हुआ ब्लैक पट्टी का दिख रहा है।

चित्र के अंदर हमें एक दूकान दिखाई दे रही है जिसके बोर्ड लाल सफ़ेद रंग से बना है उसके पास में एक ओर दुकान दे रही दिखाई दे रही।

चित्र के अंदर हमें बहुत सारे कारपेट दिखाई दे रहे हैं कारपेट नीले हर रंग के दिखाई दे रहे सफर सफेद रंग का भी दिखाई दे रहा है कारपेट के आगे ओर भी सामान दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर हमें बहुत सारी बसे दिखाई दे रही है। दो बसों का रंग लाल नीला सफेद और दिख रहा है सफेद कलर की गाडी बस भी दिख रही है। उस--

इस चित्र के अंदर हमें शाम का व्यू नजर आ रहा है। सामने किसी म इमारत का नि-व्यु दिख रहा है सामने कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं।

चित्र के अंदर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसपे केले के पत्ते लगी हुए दिख रहे है उसमे कुछ घोड़े आगे ल-बन-मूर्तियां दिख रही है। एक व्यक्ति पूजा करते हुए दिख रहा है।

पहाड़ भी दिख रहा है।

चित्र के अंदर हमें कुछ लड़-लड़कियां नृत्य करती हुई दिख रही है लड़कियों ने बा हरे लाल फिरोजी कलर के कपड़े पहने हुए इसके पीछे के बैकग्राउंड में किसी का चित्र बना हुआ--

फर्श का रंग काला और उसपे निरला का सफेद पट्टी भी दिखाई दे रही है और कुछ नीले रंग के पोस्टर भी और ऊपर भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

जो पूजा कर रहे हैं उसके पास घर भी दिखाई दे रहे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का हाथ भी दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर हमें कुछ घर बना हुआ दिख रहा है जो कागज का बना हुआ है पत्थर का बना हुआ दिख रहा है आखिर हरा कारपेट दिख रहा है। यहाँ पर एक औरत एक बच्चा है उधर पे कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए दिख रहे हैं। लाईट भी जल रही है।

यहां पर अंधेरे का टाइम हो रहा है।

तीतर के अंदर हमें यह मछली की दुकान दिखाई दे रही हैं मछलिया बहुत सारी रखी हुई दिख रही हैं। सफेद काले रंग की मछलिया दिख रही हैं।